यह एक लकड़ी की अ नांव दिखाई दे रही है | नांव चल रही है और उसके सामने बोहोत सारे आ पक्षी अं तैर रहें हैं।

यह बाहर से अ शॉपिंग मॉल का दृश्य दिख रहा है हमें अअ जहाँ पे अ बहुत सारे आदमी --

यह एक फल की दुकान है जहां पर फलों का स्टाल लगाया गया है जिस--

यह एक सलून है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपना शेप अथवा बाल अ कटीन्ग करा रहे हैं।

यह कोई धार्मिक अस्थान अथवा मंदिर है।

यह कोई गार्डनर अथवा माली का दुकान है जहाँ पर वह हर प्रकार का फूल सजोया गया है और इसे सज़ो कर व इस फूलो को बेचेगा --